पीले अक्षरों से ब्यूटी डारैक्लिनर्स एंड लेडिस सिलाई सेंटर सफ़ेद अक्षर से लिखा हुआ है और अंदर कुछ--

है हरा घास चटाई दिख रही है जिसके दोनों साइड ऊंची-ऊंची--

माँ शारदा गारमेंट्स लिखा हुआ है सफ़ेद अक्षर से माल मे दम--

साइड में रोड पे तास लगी हुई है जो एक लाइन पीले एक लाइन लाल है और बीच में

सामने एक नदी दिख रही है जिसका पानी नीला-नीला दिख रहा है जिसके दूर ऊचे पहाड़ दिख रहा है और --